उसके पीछे रॉड दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मैं देख रही हूं कि चार लड़कियां रनिंग रेस कर रही है उसमें से तीन लड़कियां पीले और सफेद रंग का टी-शर्ट पहनी हुई है--

यहां पर मैं देख पा रही हूं कि एक गॅरेज है गॅरेज के अंदर एक सफेद रंग की कार खड़ी हुई है उसके बाजू एक--

आदमी खड़ा हुआ है गैराज का रंग सफेद और लाल है उसके बाहर एक बाइक और एक कार खड़ी हुई है।

यहा पर मैं देख पा रही हू कि सामने एक कट्टे पर दो बच्चे बैठकर फोन देख रहे है उनके पीछे एक पेड़ है।

उसके सामने कचरे की गाड़ी उसके बाजू ही एक पेड़ उस के बाजू कुछ लकडिया --

उसमें तीन लोग खड़े हुए हैं एक लड़का दो लड़की लड़का लाल रंग का शर्ट पीला पैंट पहना हुआ है एक लड़की --

और ऊपर बहुत सारे वायर दिखाई दे रहे हैं।